ये जगह काफी अच्छा है यहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं डांस करके देख रहे हैं इधर यहाँ का नाम है डांस नेशन यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छह एक दो तीन चार पाँच छह से सात लोग डांस कर रहे हैं।

आदमी लोग भी है और यहाँ पे परदा भी लगा हुआ है। पेशेंट के विआईपि पेशेंट की ट्रीटमेंट शायद और अच्छा हॉस्पिटल हैं थेंक यु ।

ये भी काफी बेटर है यहाँ पे खुब सारा फंक्शन का सारा बलून लगा हुआ है।

परिवार कार्यालय परिवार कल्याण संस्थान पटना हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पटना न्यू बहुत सारे लोग भी --

यह गर्ब हब है वेरी नाइस बेटर है डन है।

काफी अच्छा भी है लोग सब खड़े हुए है सब लोग है यहाँ पे--

ये आदमी भी ठीक हैं ए अपना अंडरवेर का एड कर रहा है ये आदमी अभी इसका बॉडी भी जो है एप्रॉक्स है चेस्ट भी सही है।

और सही लग रहा है देखने में लड़का लेकिन काला सा है मसल इतना गेन हुआ नहीं है इसका बस शो ऑफ कर रहा है और जिम के अंदर है जिम के इक्विपमेंट्स भी है --

ठीक लग रहा है मतलब उनको लेके जाएगा ऑटो ुटो में तो ये लोग उसी में बैठ कर जाएंगे । वैरी नाइस गुड ।